यह एक बहुत सुंदर रेस्टोरेंट है जो बहुत ही अच्छे से सजा हुआ है।

और बाहर सब पेड़ पौधे भी दिखाई दे रहे हैं। दो खंबे दिखाई दे रहे हैं।

यह एक इशु मशी का दरबार है।

और दो पंखे दिखाई दे रहे हैं और बॉक्सिंग करने का दिखाई दे रहा है।

दो रेसिंग करने के दिखाई दे रहे हैं।

और एक मेज भी धरी हुई है।

और पीछे दुवाल पे डिजाइन उतरा हुआ है बहोत अच्छा लग रहा है कमरा।

और बाहर तीन कारें खड़ी हुई है और एक व्यक्ति अंदर जा रहा है।

यह खेत है जिसमें मुझे बहुत सारे पेड़ दिखाई दे रहे हैं।

यह एक बच्चों का रूम है जो बहुत ही अच्छे से सजा रखा--

जिसमे मुझको एक लाइटिंग भी दिख रही है।

और एक दिखाई दे रहा है। एक किवाड़ का पल्ला दिखाई दे रहा है। चार गमले दिखाई दे रहे हैं।

गाय की बराबर में एक पल्ला धरा हुआ है और तीन गाटरे दिखाई दे रहे है एक दिखाई दे रही है।

और एक जंगला दिखाई दे रहा है.। दो खूंटे दिखाई दे रहे हैं और ऊपर टीन पड़ी हुई है।

यह एक बहुत ही अच्छी दुकान है।

और दुकान में लाइटें भी लगी हुई हैं।

जिसमें बहुत सारे पेड़ पौधे लगे हुए हैं।

कुछ विकेट भी दिखाई दे रहे हैं पेड़ पौधे भी दिखाई दे रहे हैं।

मास्टर के पास एक कुर्सी भी धरी हुई है।

यह एक साइड्रिंग बांधने की तैयारी की जा रही है।

इसमें मुझे दस बाइक नजर आ रही हैं।

और एक कार के ऊपर बैग धरे हुए हैं।

और साइड में एक बड़ी सी अलमारी दिखाई दे रही है और एक किवाड़ का पल्ला भी दिखाई दे रहा है।

और बहुत सारे बाहर पेड़ पौधे लगे हुए हैं।

यह एक बहुत बड़ा अस्पताल है बाहर डॉक्टर राजकुमार लिखा हुआ है।

और एक लेडी दिखाई दे रही है और एक खंबा दिखाई दे रहा है।

दो धूमबत्ती दिखाई दे रही है एक मोमबत्ती धरी है।

और चार पांच खिड़कियां भी खुली हुई हैं।